इस चित्र मे एक पोस्ट ऑफिस का लैटर बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसके बाहर एक आदमी भी बैठा हुआ दिख रहा है इस पर डिपार्टमेंट ऑफ़ पोस्ट इंडिया लिखा हुआ है।

इस चित्र एक चाय और काफ़ी की दुकान दिख रही है जिस पर कॉफ़ी स्टाल का बैनर लगा हुआ है।